यहाँ एक रोड है जोकी समुंदर के किनारे है खुला आसमान नीला कलर का बोहोत ही प्यारा लग रहा है।

ये किसी नदी के किनारे का व्यू लग रहा है जिसके पास में ऊँचा सा कुछ है।